पीछे में बहुत सारा कपड़ा लोग भी है।

उपला का संकलजीम पूरा सनसेट कर के है।

क्लासरूम में यहां में बहुत सारे लोग पढ़ाई कर रहे हैं।

बच्चा लोग का शकल पूरा सनसेट करके हैं।

और एक ब्लू कलर का पैकेट में साफ लिख के है।

और बीच में एक फोटो दिखाई दे रहा है जिसमें--

एक बड़ा सा घर है जिसे पीले और लाल रंग से लगाया है।

पीछे में एक त्रिपाल नीला रंग का भी है।

नीचे में कार्टून के डब्बे भी बहोत सारे हैं।

एक पाइप है जो येलो कलर में दिखाई दे रहा है।

ये ग्रीन कलर में है।

घास के ऊपर में बहुत सारे फूल भी उगा हुआ है।

टेबल के ऊपर कुछ खाने की चीजें रखा हुआ है।

ऊपर में भी बहुत सारी दवाइयां रखी हुई है डब्बा के अंदर।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

पिक्चर में बहोत सारे पेड़ पौधे भी हैं।

यह लड़का ट्रेडमिल पर अपना वर्कआउट कर रहा है।

और फ्लोर ब्राउन कलर का है।

इस जिम पर बहोत सारे सामान भी रखा हुआ है।

वि पत्ते से बनाया गया है।

मुझे यहां एक इंसान दिखाई दे रहा है जो लाल शर्ट और ब्लू जींस पेंट पहन के है।

मुझे यहां एक सीरी भी दिखाई दे रहा है।

राइट साइड के सोफे के आगे में दो शीशा भी दिखाई दे रहा है।